पारक बोहोत हरा-भरा है।

ये शिक्षण स्थान का है। यह मुज़्ज़फरनगर का एक विद्यालय की फोटो है।

उस पारक की चार दीवारी की गयी है। उसके चारो ओर पेड़ ही पेड़ लगा रखी है। उसके अंदर हरी-हरी घास नजर आ रही है।

इन्हे क क देखने के लिए आई हुई है। इन्हे --

से बनाया गया। एक हाथी है जो हाथी के आकार में यह दृश्य नजर आ रहा है। यह बहोत सुन्दर नजर आ रहा है।

ये बड़ी-बड़ी लाइट लगा रखी है। यह एक होटल का दृश्य है जहाँ पर ये भोजन करने के लिए आई हुई है।

ये होटल के अंदर का दृश्य है जहाँ पर नीचे टाइल्स बिछा रखी है।

यह स्टेडियम बोहोत बड़ा है। यह अभी फिलहाल बंद है। यहाँ पर क्रिकेट का पिच बनाया गया है।

चर्च के बाहर की फोटो है। जहाँ पर एक --